एक लेडिस जो की जा रही है रेलिंग के अंदर ही है और एक जेंट्स साइड में है।

जो की तीन सौ पचहत्तर तो कोई तीन सौ पचपन तीन सौ निन्नानाबे दो सौ निन्नानबे इस तरह करके दाम इसमें लगाए गए हैं।

जिसके गेट के बगल बाहर में एक एंबुलेंस खड़ी है।

काफी अच्छी तरीको से लाइटिंग से इसको सजाया गया है और गेट पर बात करें--

लाइटिंग इसमें काफी अच्छे तरीके से लगाया गया है आप जाएं पसंद करें कपड़ा ले।

यह एक पुराना सा महल है। देखने में लग रहा है कि एक पुराना सा कोई राजा महाराजा का महल है।

वाइट सेफ के वाइट पट्टी रखा गया है ग्राउंड के और बेस्टमैन प्रैक्टिस कर रहे है।

यह एक टेंपू स्टैंड है जहां पर बहुत सारे टेंपू खड़ी हैं।